सब है यहाँ पर और --

उम्मीद करता है और देखिये यहाँ पर मस्त लग रहा है पूरा सिन ।

ताजा-ताजा सामान आया है। यहाँ पर सब कोई आता है तथा इसकी ले जाता है। सेहत के लिए सही है फल वगैरा।

यह देखिये ये एक फल का दुकान है और यहाँ पर फल मिलता है ताजा-ताजा और कई प्रकार का फल है यहाँ पर और सब कोई खरीदने आता है यहाँ पर।

आम हैं सेब और बहोत कुछ हैं यहाँ पर सब कोई खरीदने आता हैं।

और ये कितने आया है यहाँ पर भीड़ भी बहुत है और सब कोई आता है यहाँ पर ठीक कराने समान।

यह एक पिज्जा शॉप हैं और यहाँ पर और बहोत --

यहाँ पर और सबको ही घुमने भी आता है यहाँ पर बहुत सारा सीढ़ी सब है और सबको ही पूजा करता है यहाँ पर भीड़ बहुत है।